रेलिंग बनी हुई है सीढ़ी पे और जो बिल्डिंग है वो येल्लो कलर की दिखाई दे रही है जिसपे ब्लू बॉर्डर बना हुआ है अंदर वाइट कलर से पेंट हुआ है दरवाजे नजर आ रहे हैं एक नोटिस बोर्ड ह --

सब खड़े हुए हैं और यहां पर लेंटर का काम चल रहा है। काफी सरे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने जुता पहन रखा है।

ओ बच्चा गोदी में लिया हुआ है बैग लटकाये हुए है बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है सामने कांच से बना हुआ घेरा है वाइट कलर से पेंट हुआ है |

यहा पे अम एक लड़का खड़ा हुआ है जिम में जो ब्लैक टी- शर्ट और ब्लैक पैंट पे हाथ मे वॉच पेहन रखा है एक हाथ में कला धागा बांधा हुआ है।